बच्चों के घड़ी और बॉल भी टंगी हुई है।

यहाँ पर हम सामने एक बहोत ही बड़े कॉलेज को देख पा रहे है।

बहोत से ऑटो रुके हुए हैं और कुछ स्कूटी और बाइक सवार भी रुके--

साथ ही रोड पर कीचड़ का जमाव दिखाई दे रहा है।

जिस पर एक बड़ा सा पतीला दिखाई दे रहा है तथा एक काले रंग की चेयर भी--

जिस पर कुछ चित्र बने दिखाई दे रहे हैं।

चलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर हम एक कपड़े के दुकान को देख रहे है।

दो लोग भी खड़े हैं एक ने काले रंग की साड़ी दूसरे ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

कुछ फ्रेम जैसा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें सामने एक डेयरी की दुकान दिखाई दे रही है।

जिस पर गुंबद नुमा आकृति है।